और साथ ही ये बहुत ज्यादा प्यारे और बहुत ही ज्यादा लग रहे हैं।

आन शानी ये वहल अपनी प्रेमिका के लिए बनाया था।

दो काले रंग के ऐनक रखी है जिसमे हम चाहे तो अपने फेस देख सकते है।

तो जैसा कि हम ये फोटो में देख पा रहे हैं कि ये एक कार है। जहाँ पर दो अंकल लोग इसे साफ कर रहे हैं।